देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है ए में सीढ़ी आरो है और बहुत सुंदर बड़ा वाला चर्च है देखने मे बहुत सारा चीज लिखा हुआ है।

बहुत सुन्दर चारो तरफ उजला-उजला है ये लगा यहाँ पर लाइट ताइट लगा होगा करिया-करिया कुर्सी है बहुत सारा और बहुत सुन्दर है वहां पे लि----

कउनो चीज का ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउन्ड है यहाँ पे लाइट लगा हुआ ए-ए- यहाँ पे गाछ--

ये घड़िया या टेबुल टेबुल रखा हुआ है। देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है।

ये तीन ठोर शटर दिखाई दे रहा है लाइट लगा है और बल्ब और पंखा दो ठोर दिखाई दे रहा है पंखा का पट्टी दिखाई दे रहा है ।